भारत पेट्रोलियम इने तेल का वो है इसमें का तेल जाता है इसमें पेट्रोल भर कर देखो ये चोरी कर रहे होंगे देखो पाईप लगा हुआ है बाल्टी रक्खी हुई है।

और अच्छी बात है। पता है कभी आपकी आँखें दुःख रही हो सुबह सुबह उठो और ग्रीन चीज को देखो हरी चीज को। हमारी आँखें न एब्सॉर्ब करती हैं और एकदम ऐसा लगता है ठंडक ठंडक सा है ना।

ये बच्चे स्कूल के योगा केम्प लगा हुआ है। योगा कर रहे है। भाई योगा सबसे अच्छी चीज होती है। योगा सबको आना चाहिए योग क्योकि योगा ही ऐसी चीज है। अगर आप योगा करोगे तो खुश रहोगे।

देखो कितने सारे पेड़ हैं। इन नगर निगम का वो होता है कि पानी डालते रहते हैं। वेसे पेड़ो को पानी जरुर देना चाहिए अच्छा होता है पेड़ो को पानी देना क्योंकि हरियाली-सी बनी रहती है और भाई जिन्दा पेड़ तो पानी ही पीके जिन्दा रहते हैं।

बहुत अच्छा त्यौहार है मनोकामना पूर्ण करती है छठ मैंया और स्त्रियाँ पु मतलब बहुत हिम्मत होती है मम्मी लोग में जो खड़ी हो जाती है इतने ठंडे पानी में --

सुबह के चाय के साथ दे दो और नॉर्मली इंडिया में तो मेहमान आएँगे तो पहैले बिस्किट रखे जाते है| चाय के साथ बिस्किट कोल्डड्रिंक के साथ बिस्किट सबके साथ बिस्किट चलता है| बिस्किट की मार्केट तो बढ़िया चलती है| एकदम से --

भाई ये लगा है हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला है न देखो मेला लगा है कितना बड़ा सामने तो ये मंडप टाइप का लगा हुआ है के भाई जो मेले में मुख्य अतिथि है वो ने चलरी ए.सी एल.सी.डी चल रही है और मुख्य अतिथि भी आयेंगे।

देखो किसी का शादी समारोह या रिसेप्शन है सामने स्टेज है । स्टेज के लिए लोगा वेट करे अभी तो सब रिश्तेदार बाते कर रहे है देखो इधर आंटी बैठी है ।

को भाई बेला लगा हुआ है कितना अच्छे से देखो कितने सारे झूले लगे हैं और देखो कुछ लेडीजे अपने बच्चो को झुला रही है वहां पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं।